यहां पे व्हाइट कलर के पिलर दिखाई पड़ रहे जिनपे फूलों से सजाया गया है यहां पे साइड में कुछ पेड़ लगा हुआ है यहां नीचे बहुत सारे गमले दिखाई पड़ रहे है यहां पे साइड में कुछ कुर्सियां दिख रही है जो कि वे रेड कलर की दिखाई पड़ रही है यहां जमीन ग्रे कलर में दिखाई पड़ रही है।

यहाँ पे साइड में रेलिंग लगा हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे जमीन ग्रे कलर की दिख रही है। यहाँ पे ऊपर लाइट भी लगी दिखाई पड़ रही है।

यहाँ पर साइड में कुछ पेड़ लगा हुआ है जो कि ब्लैक रंग में दिखाई पड़ रहा है ऊपर बहुत सारे पेड़ दिखाई पड़ रहे है जो कि ग्रीन ब्लैक रंग में दिखाई पड़ रहे है ऊपर आसमान ग्रे कलर का दिखाई पड़ रहा है ।

पीछे कोई बस जैसा दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे साइड में एक रिक्शा खड़ा हुआ है जो की रेड कलर में दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे साइक में पेड़ लगे हुए हैं जो के ग्रीन कलर में दिखाई पड़ रहे हैं।

यहाँ पर सामने घाँस दिख रही है जो की ग्रीन और ब्राउन कलर की दिखाई पड़ रही है | पीछे कुछ पिलर भी दिखाई पड़ रहे हैं | ऊपर आसमान का कलर व्हाइट कलर में दिखाई पड़ रहा है।

ये गेट ब्राउन कलर का दिखाई पड़ रहा है |यहाँ पे ग्रीन कलर की दीवार दिखाई पड़ रही है उस पर एक पोस्टर लगा हुआ दिखाई पड़ रहा है | पीछे येलो कलर का बोर्ड लगा हुआ दिखाई पड़ रहा है।

ये एक गार्डन जैसा दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे सामने कुछ बसें खड़ी हुईं दिखाई पड़ रहीं हैं सामने एक शैडो बना हुआ है वहाँ पर नीचे कार खड़ी हुई दिखाई पड़ रही है यहाँ दीवार ग्रे कलर में दिखाई पड़ रही है यहाँ पर साइड में पिलर दिए हैं वहाँ पे बाइक भी खड़ी दिखाई पड़ रही है।

एक बिल्डिंग दिख रही है जो की येलो कलर मे दिखाई पड़ रही है यहाँ पर पिलर दिख रहैं है यहाँ पे ब्लैक कलर के गेट भी बने हुए दिखाई पड़ रहैं है यहाँ ज़मीन ग्रीन कलर की दिखाई पड़ रही है यहाँ साइड में एक पेड़ लगा हुआ है जो की ग्रीन रंग का है